मंदिर का रंग ला व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।

इसमे ऊपर जाने के लिए सीढी भी बना हुआ है।

वहां पर कई सारे सामान बाहर में रखे हुए हैं पानी के बोतल रखे हुए।

स्कूटी के ऊपर बैलून से से सजाया गया है।

व्हाइट कलर का जैकेट रखा गया है रेड कलर का जैकेट रखा गया है ब्लू कलर का जैकेट रखा गया है।

ब्लैक कलर का जैकेट रखा गया है इसका जमीन पर टाइल्स बिछाया गया है।

हरा कलर के फूल हैलाल कलर के फूल है।

एक नाव मे दर्जनों आदमी बैठे हुए है और एक नाव मे दो आदमी बैठा हुआ है।

और उसके ऊपर कई सारे पक्षी उड़ रहे हैंवहां पे बहुत दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है।

रानीबाग भी देवघर झारखंड --

इसके नीचे हरे भरे घास भी हैं।